लोहा भी रखा गया है बगल में जोकि लोहे बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं।

यहा पे लाइट भी लगाया गया है और यहां पे एक स्कैनर भी रखा गया है।

इधर में एक और कुर्सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शीशे का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे दो कुर्सी रखे हुए हैं और एक कंप्यूटर रखे हुए हैं।

जो आदमी यहां पे छुटका रहा है वहां पे पीला कलर से पेंट किया गया है।

आसपास में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल भी लटकाए गए हैं यहां पे लाल से हल्दी लिखा गया है।

ये एक रेस्टुरेंट का अंदर का दृश्य लग रही है जहां पे बहोत सारे आदमी बैठे हुवे हैं।

यहां पे सफेद कलर से अंदर में पेंट किया गया है तथा पिला कलर से।

आदमी ने शूटर भी पहना हुआ है ब्लू कलर का शर्ट भी पहना हुआ है।

यहां पे बढ़े तले हैं छोटे ताले हैं और यहां पे रंग बिरंगे ताले हैं।

यहां पे आसपास बहुत सारे सजाए गए हैं जैसे कि फूल पौधों से तथा लाइट से।

पर्दे भी लगाए गए हैं यहां पे कोई आदमी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे आदमीन दिखाई दे रहे हैं और अंदर का कलर सफेद कलर से किया गया है।

खिलाड़ी भी लगाया गया है खिड़की में बहुत सारे लाइट भी लगाया गया है यहां पे पत्थर के टाइल्स भी लगाए गए है।

पंखा भी लगाया गया है और यहां पर दो तीन दरवाजे भी देख रहे हैं।

ये एक छोटा सा हॉल का अंदर का दृश्य है जहां पे हैप्पी बर्थडे कुछ लिख करके लगाया गया है।

यहां पे कुर्सी रखे हुए हैं।

भी लटकाया गया हैं और रंग बिरंगी लाइटे भी लगाया गया है।

एक निशानेबाज का दृश्य है जहां पे तीर धनुष का निशान लगाया जाता है।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

यहां पे बहुत सारे गेंदे का फूल का माला दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मछरी दिख रहे हैं जो की पीला कलर की टोकरी में हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो की बहुत हराभरा दिख रहा है।

कल में दो कुर्सी रखे हुए हैं कुर्सी पे पानी रखा हुआ है और पानी के ऊपर गिलास रखा हुआ है।

फोन का कलर ब्लैक है और ये उघारे है और हाथ किसी कुर्सी पे रखा हुआ है।

यह एक शाम का दृश्य है जो कि क्लीन डूब रहा है।

इसमें बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं।

ये हेलमेट लगाया हुआ एक आदमी है जिसका सिर सिर्फ दिख रहा है।